पेकिंग कर रही है यहाँ बहुत सारी बाइक है और एक बड़ा-सा टेंट है और आजू-बाजू बहुत सारी घांसे है जो हरी-हरी रंग की --

सात आठ बालक रूम मेम्बर है और एक एक आंटी है जो --

काम कर रहे हैं बाजू मे गणपती अप्पा जी की मूर्ति है।

एक वेन है और उसपे उस वेन पे फूल-वुल लगे हैं और सब --

एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट है जो हाथ पीछे करके खड़ा है ऊपर एक बड़ी सी झोपड़ी लगी हुई है एक बाम्बू है एक व्हाइट कलर का डिब्बा है।

ये तस्वीर एक डाइनिंग टेबल का है जहाँ --

एक दो लोग बैनर लेके खड़े है एक आदमी जो व्हाइट टी-शर्ट पहन के खड़ा है तीन आंटियां है।

बड़ी-बड़ी दवाई की दुकान हैं एक बड़ा स गेट है जो सफेद रंग है।

लाइट का तार है जहां कोवे बैठे हुए है चार बड़ी-बड़ी एक बड़ी-सी --

सफेद रंग का बैनर लगा हुया है एक झाड़ हरे रंग का है।

एक बिजली की तारें गई हुई हैं अंदर बड़ी-बड़ी झाड़े जो हरी रंग की घासें हैं।